इस फोटो में हमें एक शोरूम टी.वी.एस. शोरूम --

पिन कोड है एकासी तिरपन उनसठ ये बाबू पूर का --